जो कि एक व्यवसाई बिल्डिंग के पीछे है यहाँ पे टीन शेड भी देखा जा सकता है और यहाँ पर कई मॉडल्स की गाड़ियां भी देखी जा सकती है ।

एक मछली मार्केट का दृश्य है जहां पर एक मछली व्यापारी कुछ छोटी और बड़ी मछलियों के साथ मार्केट में मछली बेच रहा है कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं मछली लेने के लिए |

जिसमें एक गार्ड बैठा हुआ है ।